यह तस्वीर हमें एक पार्क की दिखाई दे रही है जहां कि हम देख सकते हैं कि एक पेड़ को घेरता हुआ एक--

और हम यहां देख सकते हैं यह एयर कंडीशन्ड है जो की कैमरे की निगरानी में--

यह तस्वीर हमें पुराने जमाने के बने हुए घरों की दिखाई दे रही है जहां पर हम देख सकते हैं कि--

यह तस्वीर पत्थर को काटकर बनाए गए सीढ़ियों की दिखाई दे रही है हम जहां देख सकते हैं कि यह बहोत ही प्राचीन दिखाई दे रहा है।

जहां हम देख सकते हैं कि कुछ बच्चों ने नीले और कुछ बच्चों ने लाल और कुछ बच् --

इसका नंबर भी हमें दिखाई दे रहा है जो कि यू_पी बत्तीस जे_पी बत्तीस सतहत्तर है।

और यह स्मृति भवन का बोहोत ही बड़ा सा आकार दिखाई दे रहा है यहां पर हमें।

यह तस्वीर हमें एक बोहोत ही खूबसूरत चीज सनसेट की दि श्श दिखाई दे रही है जो कि --

हम देख सकते है यहां पर हमें एक मोबाइल टॉवर भी दिखाई दे रहा है।

हम इस तस्वीर में देख सकते हैं कि एक गोलाकार का पुल टाइप का बना हुआ है जहां पर हम देख सकते हैं की लाइटिंग वगैरा का भी अच्छे से इस्तेमाल किया गया--

यह देख सकते हैं कि यह एक खूबसूरत सा पार्क है।

देख सकते हैं काफी सारी झंडिया दिखाई दे रही हैं।

पीले कलर के गेट के साथ में बहोत ही अच्छे से लाइटिंग भी दिखाई दे रही है।

ने कैजुअल जर्सी जो कि रेड कलर की है उसे पहन रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक पतली सी रास्ता हुई दिखाई दे रही है यह तस्वीर--

रेलिंग के पास से खींची गई है जिसका कलर लाल है और उसके नीचे की डंडियां सफेद बनी हुई हैं।

मदारी वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं हम यहां देख सकते हैं कि फूल के गमले भी रखे हुए हैं।

प्राचीन मंदिर के दिखाई दे रही है यहां पर हम देख सकते हैं।

जिसमें दो व्यक्ति पहाड़ के ऊपर चढ़ कर के कुछ काम कर रहे हैं।

वीर में हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पर कुछ बोरियां रखी हुई हैं।

हम इस तस्वीर में देख सकते हैं कि एक छत की ढलाई हो रही है।

काफी सारे मजदूर हैं जो कि छत की ढलान को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

वायरिंग कुछ अटपटी सी भी दिखाई दे रही --

में देख रहे हैं कि कुछ एक्सपेंसिव एरिया भी दिख रहे हैं जो की अलग--

यह झलक हमें लखनऊ महोत्सव की दिखाई दे रही है।

और हम यहां पर बाण वगैरह को भी देख सकते हैं जो की रखे हुए हैं एक व्यक्ति कुछ खरीद रहा है।

इन मेट्रो स्टेशन पर कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है।

और हम देख सकते हैं कि यहां टीन सेट के साथ में--

यह तस्वीर एक पार्क के दिखाई दे रही है जहां पर हम देख सकते हैं कि दो से तीन महिलाएं--

और हम देख सकते हैं कि इस पार्क के बीचो बीच में पा बांस का स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई दे रहा है।

कपड़े धुलने के लिए काफी सारे फट्टे पड़े हुए हैं।

यह तस्वीर हमें खाली पड़े सिनेमा हॉल की दिखाई जा रही है।

यहां पर थ्री डी इमेजेस को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं।

हम इस तस्वीर में देख सकते हैं कि यह फोटो एक लैब की खींची गई--

पपीते के पौधे दिखाई दे रहे हैं जहां पर हम ये देख सकते है।

हम देख सकते हैं यह पहाड़ के किसी किनारे पर बै--

देख सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को लगाया गया है।

यहां बीच में हम एक मूर्ति को भी देख सकते हैं जो की सरदार वल्लभभाई पटेल की दिखाई दे रही है।

उनकी बनी हुई है जहां पर देख सकते हैं ब्लैक कलर की स्कूटी पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।